आसपास पेड़-पौधे हैं जिसमें की देखने में अच्छा लग रहें हैं।

काफी सुधार होगा बॉडी का और फिटनेस --

पुरुष भी है महिला भी पूजा करिये रही है।

बगल में एक पेड़-पौधे भी है --

बता नहीं सकते किसका मंदिर है।

अच्छा लगता होगा बजता हुआ साउंड इतना --

यह एक किम हॉल टाइप का है। उसमें कि लगता है कई वर्षों से पेंटिंग नहीं हुआ है ।

यह एक सब्जी मंडी हैं मंडी टाइप का लग रहा हैं जिसमें की --